ये ए ए ए पार्क है ये बीच में घास लगी है उसमे बीच में पौधे लगे हुए है ।

सामने लाइटे है काफी सारी एक दो आदमी बाहर खडे हुए है।

अ बाहर ये गेट है जो बंद है।

गम कुछ गमले रखे हुए हैं गेट के--

और उसमे कुछ लोंग है खड़े खड़े हुए है सामने एक बैग है बोतल रखी हुई है ।

कुछ लोग है एक आदमी कमर पे हाथ रखा है।

दो अपार्टमेंट्स है एक है रिलायंस डिजिटल ।

यहा एक बोर्ड लगा हुआ है अदमिसत्रतिव ब्लॉक ।

तिन झंडे लटके हुए है एक गुरूजी बेठे हुए है मंदिर है।

एक काफी ड्रॉ अह अलमारी हैं उसमें बॉक्सेस बने हुए हैं इसमें कपड़ों के बॉक्सेस हैं।

ये फिश मार्केट है यहाँ पे काफ़ी सारी फिशे रखी हुई है एक टब है उसमे पानी है ।

निचे घास है मिटी है साइकिल खड़ी हुई है आस पास पेड़ पौधे है धुप--

घास है विकेट बने हुए है खाली मैदान है दो विकेट रखे हुए है।

निचे पेंट हुआ है वाइट कलर का।

ये कोईई ई शो रूम हैं रे अ रेडियो मिर्ची का ऑफिस हैं आगे कांच की --

उम्म बैनर्स लगे हुए हैं काफी सारे लोग है।

ये एक बिल्डिंग है जिसमे लिखा हुआ है एल_इ_ऍम_ओ_एन_टी --

उपर भी कुछ तारे दिख रहे है काफी सारी खिडकिया है।

ये कोई स्कूल सा है इसमें ए_सी लगे हुए हैं बाहर।

का पत्थर की मूर्ति है आस पास काफी सारे पेड़ पौधे हैं नीचे कोई फोटो लगा हुआ है।

हां काफी सारी सीटे है डिज़ाइन पे पेड़ पौधे है सामने मूर्ति--

ये कोई बेकरी की शॉप है काफी काफीसारी लाइटे जल रही है काफी सारे केक है।

तर्प मम आ खम सामने ए ए ए सामने लाइट लगी हुई है खम्बा है काफ़ी सारे पेड़ पौधे है लोंग है। ।

सामने पेड़ है एक बच्चा है एक आदमी है काफ़ी सारे पेड़ पौधे है।

ऊपर पंखा है लाइटे चल रही है काँच की कुछ अ अ अ अलमारीयाँ कैंची रखी हुई है ।

कोई फेक्ट्री है फेक्ट्री के बहर गाडी खड़ी हुई है।